तथा यहां पे बहुत सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

तथा महल में कहीं पीले कलर की छीट दिखाई पड़ रही है।

इसके द्वार में एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है।

तथा उसके बगल में लाल कलर की पेंट की गई है।

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रही है।

और ब्लू और रेड दिखाई दे रहा है।

और उसके बगल में खिड़की भी है।

तथा एक कूलर लगा रखा हुआ है जो वाइट कलर में है तथा यहां पर रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है तथा वह सारी लाइटें भी जली हुई है तथा यहां पर पंखे भी हैं।

तथा इसके बाजू में काले रंग की मंदिर दिखाई पड़ रही है।

तथा उसके जमीन मे व्हाइट कलर का टाइल्स बिछा हुआ है।

तथा एक लेडीज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई दिखाई पड़ रही है।

था एक लेडीज पर्स भी दिखाई दे रही है।

यह एक घर का दृश्य दिखाई पड़ रही है।

तथा घर का व्हाइट और ब्लू में कलर किया गया है।

तथा ये आदमी के बैठने के लिए एक मैच बनाया दिख रहा है।

यह एक टेबल है जिसके ऊपर कैंची और पेन रखा हुआ है और पेन का कलर ब्लैक है।

दो आदमी व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ दिखाई दे रहा है तथा यहां पे लाइट भी जली हुई दिखाई दे रही है।

तथा यहा पे एक टेबुल है जिसका कलर ब्राऊन है।

एक घड़ी भी दिखाई पड़ रही है तथा एक आदमी रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई दिखाई दे रही है तथा यहां पे एक बैग भी दिखाई दे रही है।

तथा स्टील का रेलिंग किया गया दिख रहा है।

तथा हमे बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे पांच मूर्तियां दिखाई पड़ रही है ।

था यहां पे बहुत सारी बेड दिख रही है जिसका कलर ब्लू है।

तथा दो गमला भी रखा हुआ है जिसका कलर ग्रीन और ब्लू है।

यहां पे बहुत सारी लाइटें जली हुई दिखाई पड़ रही है।

और यहां पे बहुत सारी कुर्सियां भी दिख रही है जो पीले कलर में दिखाई पड़ रही ।

एक आदमी फोन पे बात करते हुए नजर आ रहे है।

यह एक हॉल का दृश्य दिखाई पड़ रही है।

था गाड़ी का तीन पहिया दिख रहा है जो काले रंग में है।

यह एक बस सस्टैंड का दृश्य दिखाई पड़ रही है जिसमें बहुत सारी बस हैं

तथा यहां पर बहुत सारी रंग बिरंगी फूल दिखाई पड़ रही है।